एक लाल रंग की अलमारी भी है कमरे में एक दरवाजा भी है।

छत लकड़ी की है और इसमें लाल रंग की डिजाइन भी है।

आश्रय की छत धातु की है और इसमें पारदर्शी पॉली कार्बोनेट सीट लगी हुई है।

छवि में एक व्यस्त सड़क का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह छवि किसी सेवा केंद्र के अंदर के दृश्य को दिखा रही--

इमारत का रंग पीला या हल्का भूरा है।

छत पर एक सीढ़ी और कुछ निर्माण सामग्री भी दिखाई दे रही है।

इमारत के ऊपर एक साइन बोर्ड है जिसपर रोहिणी मोहिनी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

छवि में एक खुली जिम दिखाई दे रही है।

दुकान में एक रेफ्रिजरेटर भी है जिसमें ठंड बीयर और डेयरी उत्पाद रखे हुए हैं।

कोलाज में कई छोटी छोटी तस्वीरे एक साथ जोड़कर बनाया गया है।

जहां एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

साइकिल का रंग काला है और उस पर नारंगी पीले और सफेद रंग के डिजाइन है।

छवि में एक मोबाइल खाद्य वैन दिखाई दे रही है।

इसका डिजाइन खुले काउंटर और विस्तार योग्य छत के साथ बाहरी स्थानों पर भोजन परोसने के लिए अनुकूलित है।

की मंजिलें हैं और यह सफेद और नीले रंग के रंगों में रंगी हुई है।

यह तस्वीर एक आधुनिक कैफे या रेस्टोरेंट की प्रतीत होती है।

दुकान के अंदर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ और अन्य सामान रखे हुए हैं।

इमारत के सामने एक बड़ा पार्किंग इस्थल है जिस पर नो पार्किंग लिखा हुआ है।

जिसमें एक लाल कालीन है जो इसके ऊपर जाता है।

छवि में एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर दिखाई दे रहा है।